एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके सामने छोटे पौधों का गार्डन बनाया गया है जिसमे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए है।

ये एक बड़ी सी जगह है यहाँ पे बहुत सारे लोग अंदर मे बैठे हुए है बहुत सारी महिलाये है और यहाँ पे खिड़की दरवाजे बने हुए है दीवाल के उपर एक पोस्टर लगे हुए है।

एक महिला है जिसने अपने कांधे पे पर्स टंगाया हुआ है।

बडा सा गेट है जिसके दोनों तरफ में बाउंड्री बनाई गई है जिसको डार्क पिंक कलर से पैंट किया गया है और वाइट पत्ते दिए गए है बाउंड्री के ऊपर में क्रॉस का चिन्ह बना है।

ये एक बड़ी सी लाल कलर की बॉउन्ड्री बनाई गई है जिसपे सफेद रंग से पेंट किया गया है और सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है।

--जिसके सामने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है एक यहाँ पर ब्लैक कलर की कार खड़ी है सामने मे एक बड़ी सी बिल्डिंग है रेड कलर की--

यहा पर बहोत सारी इटे रखे हुए है। ईटों की दीवाल बनाई जा रही है सिमेन्ट से और यहा पे एक महिला है जिसने सर पे हरी गमछा बांधा हुआ है साड़ी पहने हुए है।

बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें सबसे ऊपर में घड़ी लगी हुई है निचे एक लाल कलर से पंडाल लगा हुआ है सामने एक लोहे का गेट लगा हुआ है बाउन्ड्री बानी हुई है।

नीचे बहुत सारा हरा घाँस लगा हुआ है और बिल्डिंग के अंदर में दो लोग खड़े हैं सीढ़ी बनाई गई हैं बिल्डिंग पे ऊपर आसमान नज़र आ रहा है।

मकान का काम शुरू है मकान में बहुत सारा लोहा बंधा है और सीमेंट ईंटों की दीवाल बनी है। पीछे बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है।

--और यहाँ पे एक लड़की ने गॉगल लगाया हुआ है।